और खेत में हरियाली हरियाली नजर आ रही है सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है।

बड़े बड़े से गोल खंबे है उनपे कुछ बैनर लगे हुए है जो दिखाई नही दे रहे है।

लगी हुई है. सामने क्रिसमस ट्री लगी हुई है।

रेलिंग के पास बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ के --

इसमें अ अंदर दुकान के अंदर एक व्यक्ती खड़ा हुआ दिख रहा है दुकान के बहार --

साइड में रेड कलर की टी शर्ट पहने एक व्यक्ती खड़ा है और बाहर भी एक व्यक्ती नजर आ रहा है।